यहां पर काफी सुंदर दिखाई --

इस सैलून पर काउंटर लगाए गए हैं यहां पर शीशे भी हैं।

यहां पर एक बड़ा सा बिल्डिंग है इसमें बरांडा भी है।

यहां पर काफी आदमी भी खड़े हैं।

यहां पर काफी सारे पत्थर भी हैं।